यहां एक ओर यहां पर लड़के लड़कियां कक्ष में बैठे हुए हैं और कोई एक ओर बच्चे गेट पर खड़े हैं और एक पानी की बॉटल भी रखी हुई है।

और एक दरवाजा भी नजर आ रहा हैं और भी नजर आ रहीं हैं और काफी सारे बादल भी मंडराए हुए हैं और यह एक --

कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है और यहां पर हरियाली बहुत है और पत्थर ही पत्थर दिख रहे है यहां पर पानी का ज्यादा मात्रा में --

यहां पर टू टियर दाउती रोड करी है यह दूकान है और पास में ही एक मस्जिद और एक --

यहां पर महेश्वरी धर्मशाला बीकानेर केवल अस्पताल में भर्ती रोगियों के रोगियों के लिए है और यह बीकानेर में स्थित है

कृपया आपसे विनती है कि आप आए और यहां पर बहुत अच्छा है।

गले में नेकबैंड है और काफी सारे पत्थर दिख रहे हैं और उसके पीछे काफी सारी पब्लिक हैं और हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

और रंग बिरंगी लाइटें भी चमक रही है और यहां पर एक दम अच्छी अच्छी खिड़कियां हैं अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं इसलिए आप भी कभी --

ब्लू ऑयल फोर व्हीलर्स दिख रहा है क्योंकि यहां पर जो ऑयल खोलते हैं तो ऑयल में से एक गिफ्ट निकलता है तो उस गिफ्ट का कोड यह रख लेते हैं और --

यह एक छत से खीचा हुआ फोटो का दृश्य नजर आ रहा है यहाँ पर काफी सारे बिल्डिंगे बनी हुई है और यहाँ पे एक मार्केट है।

दोस्तों यह स्टेट बैंक ए_टी_एम दिख रहा है यहां पर पैसे निकाले जाते हैं अंदर एक चेयर दिख रही है।

यहां दिन का माहौल है यहां पर से--